सामने की तरफ बहोत से पौधे लगे हुए हैं जिनमें बहोत से फ्लावर लगे हुए हैं।

यहां पर एक व्हाइट कार खड़ी है जिसे फूलों से काफी सजाया गया है काफी अच्छा डेकोरेशन किया गया है।

और बीच में एक गार्डन हैं गार्डन में घास लगी हुई है बहोत सी रेड चेयर है।

आगे की तरफ एक ब्राउन रेड कलर का गेट है जो अंदर की तरफ है।

बहुत भीड़ है बहुत सी बिल्डिंगे हैं जो ब्राउन कलर की है।

कुछ लाइट्स के पोस्टर लगे है जो वाइट रेड ग्रीन सभी कलर के है नीचे बहुत सी --

दुकानें है यहां पर बहुत से लोग खड़े हुए हैं।

येलो कलर का पोस्टर लगा हुआ है और ऊपर की तरफ येलो पिन --

चारों तरफ रास्ता बना है जो वाइट और पिंक कलर का है।

कुछ व्हाइट कलर के चेयर और सामान भी रखा है ग्राउंड में--

सिड़िया है वाइट कलर के सामने दीवार पर भी कुछ डिजाइन बनी हुई है।

मूर्तियां रखी हुई है फूलों से इसे सजाया गया है।

रेड पोस्टर लगा है साइड में एक व्हाइट और येल्लो कलर का--

यहां पर एक शॉप है जो चीनी के सामान की शॉप है वाइट कलर की अलमारी है जिसमें--